एक विद्यालय के अंदर का दृश्य हमें दिखाई पड़ रहा है जिसकी दिवारें लाल रंग की हैं। कुछ बच्चे बैठ कर अपना कार्य करते दिखाई दे रहें हैं।

जिसमे कि हमें एक विद्यालय के अंदर --

इस तस्वीर में हमें सुबह का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिसकी दीवारें सफेद एवं लाल रंग की जमीन पर कुछ बच्चे बैठ कर अपना कार्य करते दिख रहे।

इस तस्वीर मे हमे सुबह का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमे की हमे एक इमारत के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है| एक बालू का ढेर दिख रहा है जिस पे तीन व्यक्ति लेटे हुवे है।